तस्वीर मे हमे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे हमे दो व्यक्ति एक छोटीसी नाव पे चलाते हुए दिखाई दे रहे है दोनों के हाथों मे एक-एक चप्पू है जो की काले रंगो का है।

काफीस काफिसारे सारे बड़े बड़े बरतनों को भी रखा हुआ देख सकते है।

इस तस्वीर मे हमे एक प्रोग्राम होता हुआ दिख रहा है जहा मे तीन महिला नृत्य कर रही है वहा पे एक मंच लगा हुआ है जहा पे हम तीन महिला ओ --

मे हमे एक एम्यूजमेंट पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पे अलग-अलग तरीके के झूले है इस तस्वीर मे हमे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है इस तस्वीर मे हम नाव वाला झूला व बंजिं-जंपिंग करनेवाला--

यह तस्वीर हमे एक विद्यालय की दिख रही हैं जिसके ग्राउंड मे जहां पर एक ट्रैक बना हुआ हैं वहाँ पर काफी सारे व्यक्ति खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

काफी मैदान में काफी सारी लड-लड्कीया मौजूद है।

ईस तस्वीर मे हम एक गुफा वाला मंदिर को देख सकते है। जहाँ जिसकी दीवारों पर नीले रंग की टाईल्स लगी हुई है व हमे काफी सारे भगवनों की--

इस तस्वीर मे हमे एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है जिसकी बाउंड्री पर काफी सारे लोग मौजूद है और--

उनके बगल मे हमे एक विशाल वृक्ष भी देखने को मिलता है।

गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी है वह उससे बातचीत कर रहा है वह उसकी दीवार पर हमे एक डिजिटल घड़ी भी दिखाई दे रही--

उसके पीछे हम काफी सारे सूटो को देख सकते है जो की अलग अलग डिज़ाइन के व अलग अलग रंगो के है जैसे हरा मरून पीला काला गुलाबी आदि--

सारे बच- छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए है वह अपने सर्टिफिकीट दिखा रहे है इस तस्वीर जिसमे वह फोटो खिचवा रहे है।